और टीवी है और काफ़ी अच्छी जगह है। बहोत अच्छी से मतलब इसे सजा के रखा गया है। यहाँ पे लोग आते हैं। अपना मेकअप और अक और भी बहोत --

हरीशचन्द बालिका इंटर कॉलेज है। ये हरीश चन्द कॉलेज है। यहाँ पे यहाँ पे पढ़ाई बहोत अच्छी होती है। गेम्स भी करवाए जाते हैं और --